पर्ल में ब्लॉक्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम पर्ल में विभिन्न उपलब्ध ब्लॉक्स के बारे में सीखेंगे
मैं उबंटु लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्ल 5142 का उपयोग कर रहा हूँ
मैं गेडिट टेक्स्ट एडिटर का उपयोग भी करुँगा
आप अपने पसंद का कोई भी टेक्स्ट एडिटर उपयोग कर सकते हैं
एक पूर्वापेक्षा के रूप में आपको पर्ल में वेरिएबल्स कमेंट्स का सामान्य ज्ञान होना चाहिए
पर्ल में डेटा स्ट्रक्चर्स का ज्ञान अतिरिक्त लाभदायक होगा
कृपया संबंधित स्पोकन ट्यूटोरियल्स के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर जाएँ
पर्ल 5 विशेष ब्लॉक्स प्रदान करता है
ये ब्लॉक्स पर्ल प्रोग्राम के विभिन्न स्तरों पर निष्पादित होते हैं
ये ब्लॉक्स हैं बेगिन इंड यूनिचेक चेक इनिट बेगिन ब्लॉक्स के साथ शुरु करते हैं
बेगिन ब्लॉक संचयन के समय निष्पादित होता है
अतः इस ब्लॉक में लिखा गया कोई भी कोड संचयन के समय पहली बार निष्पादित होता है
पर्ल स्क्रिप्ट में हमारे पास कई बेगिन ब्लॉक्स हो सकते हैं
ये ब्लॉक्स डिक्लेरैशन के क्रम में निष्पादित होंगे
जो फर्स्ट डिफाइन फर्स्ट एक्जीक्यूट स्वरूप में है
बेगिन ब्लॉक्स के लिए सिन्टेक्स निम्न है
बेगिन बडे अक्षरों में स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट
एंटर दबाएँ
संचयन के समय कोड का भाग निष्पादित होगा
एंटर दबाएँ
क्लोज कर्ली ब्रैकेट
अब बेगिन ब्लॉक्स का एक उदाहरण देखते हैं
टर्मिनल खोलें और टाइप करें गेडिट बिगिनब्लॉक डॉट पीएल स्पेस एम्परसैंड और एंटर दबाएँ
यह गेडिट में बिगिनब्लॉक डॉट पीएल फाइल खोलेगा
कोड के निम्न भाग को टाइप करें जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है
देखते हैं कि मैंने स्क्रिप्ट में क्या लिखा है
यहाँ हमने बेगिन ब्लॉक्स के पहले और बाद में कुछ टेक्स्ट प्रिंट किया है
इसी तरह मैंने प्रत्येक बेगिन ब्लॉक में एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है
कृपया ध्यान दें मैंने बेगिन ब्लॉक्स के बाद सेमीकॉलन नहीं दिया है
सेमीकॉलन प्रविष्ट करने पर प्रोग्राम के निष्पादन में सिंटेक्स एरर होगी
अब फाइल को सेव करने के लिए Ctrls दबाएँ
फिर टर्मिनल पर जाएँ और पर्ल बिगिनब्लॉक डॉट पीएल टाइप करके स्क्रिप्ट को निष्पादित करें
और एंटर दबाएँ
आप आउटपुट प्राप्त करेंगे जैसा कि टर्मिनल पर प्रदर्शित है
ध्यान दें कि पहले बेगिन ब्लॉक में लिखी लाइन पहले प्रिंट होती है और स्क्रिप्ट में पहला प्रिंट स्टेटमेंट वास्तव में बेगिन ब्लॉक स्टेटेमेंट्स के बाद प्रिंट होता है
बेगिन ब्लॉक्स उनके डिक्लेरैशन के क्रम में निष्पादित होता है इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि बेगिन ब्लॉक्स में लिखा गया कोड पहले निष्पादित होता है
यह पर्ल स्क्रिप्ट में बेगिन ब्लॉक का निरपेक्ष स्थान है
बेगिन ब्लॉक्स हमेशा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रणाली से निष्पादित होता है
वास्तविक निष्पादन शुरु होने से पहले इस ब्लॉक का पहला उपयोग स्क्रिप्ट में फाइल्स सम्मिलित करना है
अब इंड ब्लॉक को समझते हैं
इंड ब्लॉक पर्ल प्रोग्राम के अंत में निष्पादित होता है
इस ब्लॉक में लिखा गया कोड पर्ल द्वारा प्रोग्राम के निष्पादन की समाप्ति के बाद निष्पादित होता है
हमारे पास पर्ल स्क्रिप्ट में कई इंड ब्लॉक्स हो सकते हैं
ये ब्लॉक्स डिक्लेरैशन के विपरीत क्रम में निष्पादित होंगे
अर्थात लास्ट डिफाइन फर्स्ट एक्जीक्यूट स्वरुप में
इंड ब्लॉक्स के लिए सिंटेक्स निम्न है बडे अक्षरों में इंड ओपन कर्ली ब्रैकेट
एंटर दबाएँ
कोड का भाग पर्ल स्क्रिप्ट के अंत में निष्पादित होगा
एंटर दबाएँ
क्लोज कर्ली ब्रैकेट
अब इंड ब्लॉक्स का एक उदाहरण देखते हैं
टर्मिनल खोलें और टाइप करें गेडिट एंडब्लॉक डॉट पीएल स्पेस एम्परसैंड और एंटर दबाएँ
यह गेडिट में एंडब्लॉक डॉट पीएल फाइल खोलेगा
कोड के निम्न भाग को टाइप करें जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है
देखते हैं कि मैंने इस स्क्रिप्ट में क्या लिखा है
यहाँ हमने इंड ब्लॉक्स से पहले और बाद में कुछ टेक्स्ट प्रिंट किया है
इसीतरह हमने प्रत्येक इंड ब्लॉक में एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है
कृपया ध्यान दें मैंने इंड ब्लॉक के बाद सेमीकॉलन नहीं दिया है
यदि हम सेमीकॉलन देते हैं तो यहाँ कंपाइलेशन पर एक सिंटेक्स एरर होगा
अब फाइल को सेव करने के लिए Ctrls दबाएँ
फिर टर्मिनल पर जाएँ और पर्ल एंडब्लॉक डॉट पीएल टाइप करके स्क्रिप्ट को निष्पादित करें
और एंटर दबाएँ
आपको आउटपुट प्राप्त होगा जैसा कि टर्मिनल पर दिखाया गया है
ध्यान दें कि इंड ब्लॉक में लिखी लाइन अंत में प्रिंट होती है
स्क्रिप्ट में अंतिम प्रिंट स्टेटमेंट वास्तव में इंड ब्लॉक से पहले प्रिंट होता है और इंड ब्लॉक उनके डिक्लेरैशन के विपरीत क्रम में निष्पादित होते हैं
उदाहरण से यह स्पष्ट है कि इंड ब्लॉक्स में लिखा गया कोड अंत में निष्पादित होता है
यह पर्ल स्क्रिप्ट में इंड ब्लॉक के स्थान का निरपेक्ष है और इंड ब्लॉक्स लास्ट इन फर्स्ट आउट तरीके से निष्पादित होते हैं
अतः इंड ब्लॉक का एक उपयोग एग्जिट होने से पहले प्रोग्राम में बनाये गये ऑब्जेक्ट्स को नष्ट करने के लिए किया जाता है
इसीतरह पर्ल में यूनिचेक चेक और इनिट ब्लॉक्स हैं
इन ब्लॉक्स का उपयोग कभी कभार डेवलपर्स द्वारा किया जाता है और समझने के लिए थोड़ा मुश्किल होते हैं
अतः मैं आपको इन ब्लॉक्स के बारे में जानकारी दूँगा
यूनिचेक चेक और इनिट ब्लॉक्स मुख्य प्रोग्राम के कंपाइलेशन और निष्पादन के पहलूओं के बीच परिवर्तन को जानने के लिए उपयोगित है और निष्पादन के पहले तथा कंपाइलेशन के बाद कुछ चेक्स या इनिशिलाइजेशन को क्रियान्वित करने के लिए उपयोगित हैं
यूनिचेक और चेक ब्लॉक्स लास्ट इन फर्स्ट आउट तरीके से रन होता है
जबकि इनिट ब्लॉक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तरीके से रन होता है
यूनिचेक ब्लॉक लिए सिंटेक्स निम्न है बडे अक्षरों में यूनिचेक स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट
एंटर दबाएँ
निष्पादित होने वाले कोड का भाग
एंटर दबाएँ
क्लोज कर्ली ब्रैकेट
चेक ब्लॉक के लिए सिंटेक्स निम्न है बड़े अक्षरों में चेक स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट
एंटर दबाएँ
निष्पादित होने वाले कोड का भाग
एंटर दबाएँ
क्लोज कर्ली ब्रैकेट
इनिट ब्लॉक के लिए सिंटेक्स निम्न है बडे अक्षरों में इनिट स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट
एंटर दबाएँ
इनिशिलाइज होने वाले कोड का भाग एंटर दबाएँ
क्लोज कर्ली ब्रैकेट
अच्छे से समझने के लिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप अपनी पर्ल स्क्रिप्ट्स में इन ब्लॉक्स के साथ प्रयोग करें
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा सेम्पल प्रोग्राम्स का उपयोग करके विस्तार में बेगिन और इंड ब्लॉक्स और यूनिचेक चेक और इनिट ब्लॉक्स के बारे में
यहाँ आपके लिए नियत कार्य है पर्ल स्क्रिप्ट में निम्न कोड टाइप करें
स्क्रिप्ट को निष्पादित करें और आउटपुट देखें
निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है